यहां एक ख़ूबसूरत सा कपड़ा रखा हुआ है। जिसका रंग हल्का गुलाबी है। और इसके ऊपर पांच खूबसूरत से लाल रंग के फूल बने हुए हैं।

खूबसूरत सी बहुत अची जगह दिख रही हे बड़े - बड़े पत्थर रखे हुए हे इस के उपर किसे व्यक्ति का चित्रः बना हुआ हैं।

यहाँ एक छोटी सी खूबसूरत सी दुकान हे उस के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ हैं।

यहाँ पर एक जे_सी_बी खड़ी हुई है जे_सी_बी पीले रंग का है उस जे_सी_बी के पिछे एक व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है।

यहाँ पर सफेद रंग का पर से रास्ता बना हुआ दिख रहा है जो भी रास्ते के प्लव का निसान बना हुआ है उस के लाल रंग की पत्थर लगी हुई है उस के पास हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं उस पर कुछ लोग खड़े हुए भी दिख रहे हैं।

दुकान के अंदर खूब सारा समान रखा गया है दुकान के ऊपर बॉक्स मे समान रखा गया है दुकान के अंदर एक लाइट जल रही है दुकान के बाहर एक मीटर भी लगा हुआ रहा है।